यहां पर एक बहोत सारा नाव रखा हुआ है और एक लड़का खड़ा हुआ है और कुछ पेड़-पौधा भी है और नदी भी दिख रही है।

और वो कुर्सी लगा हुआ है बहोत सारा।

यहां पर एक बड़ा सा मंदिर है जहां पे बहोत सारे लोग आए हैं घूमने फिरने आस पास एक नदी है कुछ सामान भी रखा गया है और घर भी दिख रहा है।

यहां पर एक औरत भी खड़ी हुई हैं बहोत सारे कौवा भी हैं।

और हरा कलर से रंगाया गया है।

यहां पर एक रुम में दूल्हा का कुर्ता रखा गया बहोत सारा तीन रंग के कुर्ता है।

यहां पे बहोत सारा कुर्सी रखा हुआ है।

यहां पर एक पंखा का दुकान हैं बहुत सारे लोग आय हुए है।

यहां पर एक फ्रिज भी रखा हुआ है एक बैंक है बैंक के पास बहुत सारे लगाए हुए हैं पैसा निकलने के लिए बाइक लगा हुआ है बहुत सारा ई स्कूटी भी लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं मोमबत्ती जल रहा है दीप जल रही है एक और दुकान में एक आदमी बैठा हुआ है और बेच रहा है सामान।

यहां पर एक आदमी खड़े होकर बैठ कर फोटो खींच रहा है यहां उसका उसका सैलून में बाहर खड़ा किया हुआ है कर रहा है बहुत सारे--